यहाँ पे पंडाल भी सजा है बहुत ही खुबसूरत है।

यहाँ पे जिसमे लोग घूमने आते हैं गार्डेन बहुत सुपर है जो घूमने आते है।

ये एक एग्जाम हॉल है जो एग्जाम देते हैं ये लोग।

जो यहां आसमान एक नदी भी है दोनों तरफ पेड़ है पौधा है हरे-भरे हैं हरा भरा-भरा

ऐसी ही सब तरह का बुक होता है जो मिलते हैं उसमे से --

यहाँ से जो आदमी उठ गया महिला सब --

देखने मे बहुत भी अच्छा लगता है।

इहाँ एक दुकान है जो चीज मिलता है हर चीज मिलता है।